यह एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं।

खुशी खुशी अपना बिल भी भरते है और साफ पानी भी उपलब्ध है।

जिन्हें लड़कियां पहनती हैं और सुंदर दिखती है।

और यह दुकान एक चौराहे पर स्थित हैं जहां पर और भी सामान मिलते हैं।

यह एक ग्राउंड का दृश्य है जहां पर कई प्रकार की कसरत भी की जाती है।

दूर दूर से दर्शन करने के लिए भारी भीड़ भी आती है।

यह एक होटल का दृश्य है जहां पर बहुत सारी टेबल लगी हुई है।

और कुर्सियां भी रखी हुई है यहां बहुत ही अच्छा सुंदर खाना मिलता है।

यह एक बस स्टैंड व टेंपो स्टैंड की जगह है।

यह एक बार का दृश्य है जहां पर कई प्रकार की दारू--

और यहां पर नशा किया जाता है नशा शरीर के लिए हानिकारक है।